और इस मिठाई को खाइये और विजय डेरी को --

हम्म दुकान में लेने जरूर जाइये।

और यहाँ तैराक सीखा जाता है।

कसरत करते हैं। कसरत करना चाहिए। छोटा जिम है।

व्यक्ति जो कि रोड पे है और बहोत प्यार से चाय बना रहा है।